जो नीला कलर और ऊ सफेद कलर का है बहुत सारे छोटे छोटे ग्-ग्रास घास है और पेड़ भी लगे हुए है जो बहुत ही प्यारा लग रहा है।

यह एक बहुत ही पुराना किला लग रहा है जिसके कलर पूरे छूट छूटे हुए है।

यह एक गार्डन है गार्डन के पीछे एक घर दिख रहा है जिसका कलर सफ़ेद है और बहुत सारे पेड़ लगे हैं जिसका कलर हरा-हरा है और छोटे-छोटे पेड़ लगे जिसमें पीले-पीले फूल खिले हुए हैं।

यह एक कार्यालय है जिसका कलर सफेद है कार्यालय के ऊपर एक पत्रा लगा हुआ है सफेद कलर का और उसपे छोटी-छोटी पत्ती गिरी गिरी हुई है पेड़ की जो बहुत ही प्यारी लग रही है।

यह एक किला है जो बहुत ही प्यारा लग रहा है बाहर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं जो हरे-हरे कलर के पेड़ हैं।